यहाँ एक घर है जहाँ पर इंसान लोग रहते है और क्या बोलते है रहे थे हम गाड़ी वगैरा खड़ी करने के लिए भी साधन है यहाँ मजबूत रोड एवम पक्का मकान बनाया है जी --

गांव के लोग पवन चक्की भी लगी हुई है